पक्षियों में पंख होते हैं उनकी चोंच होती है पंख पंख से वो उड़ना उड़ सकती हैं आकाश में उड़ती है इतनी सुंदर दिखती है आकाश में उड़ते उड़ते सब --

मंदिर एक धार्मिक स्थल होता है जहां पर सभी श्रद्धालु जाकर भक्ति करते हैं।

बहोत ही सारे सुविधाएं होती हैं। जिस पर आप व्यायाम कर सकते हैं।

बागान बहुत ही आम हो चुके हैं सब सभी के घरों में बागान पाए जाते हैं सभी सुंदर सुंदर वहाँ पर फूल लगाते हैं।

उसको देखकर बहोत ही आनंद लगता है। वह एक बहोत ही सुंदर पक्षी है। जिसके पंख में रंग होता है बहोत ही बढ़िया दिखता है।

वहाँ पर व्यायाम करते हैं जिससे वो स्वस्थ भी रहते हैं।

एवं फलों की दुकानें कई --